एक लेडीज दिखाई दे रही है।

जहां छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं और उनका यहां पर--

जिसके अंदर मुझे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहां मुझे--

सामने मुझे एक बहोत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहां पर एक बहुत बड़ा सा पेड़--